एक कार खड़ी हुई है।

और यहां पर एक नल्का का खड़ा हुआ है।

कॉलेज के पास एक आंगन है।

दो बंदे बैठे हैं और एक बंदा चाय पी रहा है।

कुछ आदमी भी यहां पर खड़े हुए हैं।

एक पोस्टर लग रहा है उसमे पत्ती टाइप का गुलदस्ता बन रहा है और एक रैक है।

कलर चॉकलेट है और यहां पर एक दीवाल भी है।

यहां एक पोस्टर है उसपे एक टीटो लिख रहा है।